और साथ में बाहर कुछ एक घर सा बना हुआ है।

बटुक भैरव बाबा मंदिर और उसके आसपास के दीवारो पर भी ओम का निशान बना हुआ--

जिसमें दो फ्रिज है और उन फ्रिज में अलग अलग टाइप की कोलड्रिंक पड़ी है।

यहां पर बहुत सारे डब्बिया ही डब्बिया पड़ी हैं जिसमें कुछ तरह का समान है और इसमें बहुत सामान को हर को डब्बे में डिजाया हुआ है।

साथ मे सीनरीज भी कुछ दीवारों पे लगी हुई और सामने दो ए_सी दिख रही हैं।

एक दिवार बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है साथ में कॉलम यहां पर एक स्टैंड में छह बतौर टांग रखी है।

जिसकी रोशनी ऊपर नीचे जा रही है और इस साइड भी एक बड़ा सा बल्ब सा लगा हुआ है जिसकी भी बोहोत अच्छी रोशनी जा रही --

तथा यहां पर बहुत सारे लोग भीड़ लगी हुई है मंदिर की कुछ अंदर खड़े तो कुछ बाहर खड़े हैं कुछ मोमबत्तियां से जल रही है।

दो आदमी ने बहोत सारे पथरो को एक साथ पकड़ रखा है और दो आदमी एक पत्थर को एक रेडे पर रखकर लेकर जा रहे हैं।

यह एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें एक लड़का एक बाइक पर बैठा है और उसके सामने दो बाइक खाली ऐसे खड़े हैं।

तब बाबा जी की फोटो ही फोटो नीचे भी शिवलिंग बना हुआ है।

यह एक बॉक्स लगा रहा है जिसमें बॉक्स के दोनों तरफ़ से ताला लगा के रखा गया है और बॉक्स के अंदर कुछ समान से दिखाई दे रहा है।

तथा इस शीशे पर बड़े बड़े अक्षर में फोर जी लिखा हुआ उपर कुछ येलो कलर के स्टीकर भी चिपकाए हुआ है।

दिवालों बहुत सारे पोस्टर ही पोस्टर लगे हैं उस लाइट की रोशनी नीचे पड़ रही है।

यहां पर तीन चार आदमी खड़े हैं और यहां पे एक साइकिल भी खड़ी हुई यहां पे एक बस है जिसमें बस का गेट खुला है उसके बाद शीशे लगा हुआ है कोई रेस्टोरेंट जैसा लग रहा है।

पेड़ पौधे भी उगे हुए हैं और बीच में पेड़ पौधे भी उगे हुए हैं तथा जहां पर देखिये पानी बह रहा है। उसने उसके अंदर दो तीन बच्चे और एक आदमी खड़ा है। नहा रहे हैं।

यह एक खेलने का मैदान लग रहा है जहां पर एक लड़की ने हाथ में बैट पकड़ा हुआ है बैटिंग करने जा रही है दूसरी लड़की पीछे से खड़ी होकर बॉल पकड़ने की पकड़ने की तरह बैठी है और यहां पर तीन डांडिया सी लगाई गई है जो क्रिकेट मैच में लगी होती हैं।

उन पत्थर के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है अद्वैत गिरीकर्णी।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

यहां पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो।

एक इस साइड खड़ा है तो दूसरा आदमी उस मिट्टी वाली साइड खड़ा है।

पीछे बोर्ड पर लिखा हुआ है बी_डी_डब्लू_आर_एल_डी स्कूल ।

यहां पर बहुत सारे आदमी खड़े व कुछ आदमी अपने काम को बैठकर कर रहे हैं।

यह कोई कपड़ों की शॉप लग रही है जहां पर कुछ ड्रेसेज ऐसे टंगी हुई है तथा कुछ डमी में लगा कर रखी गई है।

लाइट्स लगी हुई है जिनकी रोशनी नीचे टेबल्स पर भी आ रही है।

सभी इसमें मस्ती से खेल रहे हैं और सामने एक झूला दिखाई दे रहा है हल्का सा।

तथा इस दुकान के शटर के ऊपर दो ताले टंगे हुए हैं दोनों साइड बाई साइड ।

यहां पर दो आदमी बैठे है तथा एक पैलेस दिखाई दे रहा है।

और ऊपर एक नेट भी दिखाई दे रही हैं और एक छोटा सा बल्ब दिखाई दे रहा और हल्के-हल्के डब्बे से यहां पर बने हुए हैं।